यह एक मैदान या पार्क का चित्र है जिसमें कई वनस्पितियाँ पेड़ पौधे --

इस चित्र में हमें नौ रेख दिखाई दे रहे हैं यह एक दुकान का चित्र है जिसमें --

नीचे एक पानी का थरमस और कुछ कुर्सिया लगा रखी हैं।

यह दृश्‍य हमें एक समारोह का दिखाई पड़ता है।

एक तालाब का दिखाई पड़ रहा है जिसके चारों ओर --

पत्‍थरों का एक गोल घेरा बना है जिसमें एक पेड़ उगाया गया है जहाँ पे ताकि नहाने के बाद वहाँ पे छाँव मिल सके।

जिस जो नदी है वह पुल के नीचे से बह रही है।

पूजा कर रहे हैं और यह चित्र लकड़ी से बनाया गया है जिसमें कुछ लोग नदी में नहा भी रहे हैं और कुछ लोग जो पंडितजी आये हैं उनकी --

यह चित्र एक दुकान का दिखाई पड़ रहा है।

यह चित्र एक पुस्‍तकालय का दिखाई पड़ रहा है।

शायद वह आज ही खुला है क्‍योंकि यहाँ पूजा हो रही है जिसमें एक फोटो गणेश भगवान की है लक्ष्‍मी माता की है।